यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर एक गाड़ी छपी हुई है।

यहां एक छज्जे के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है।

पीछे डेकोरेशन हो रखी है।

इसमें कि कितने प्रकार की सामान रखे हुए हैं।

दो तीन प्रकार दवाई है इसमें।

व्हाइट पहन के उधर साइड में खंबे की साइड में खड़ा हुआ है।

एक बच्चे ने सिर पर हाथ रख रखा है।

माला पड़ी हुई है सब की गले में।

डेकोरेशन कर रखी है यहां पर।

यहां पे एक हॉल है हॉल में कितने प्रकार पंखे लगे हुए हैं।

सामने एक लड़का खड़ा हुआ है यहां पर।

इधर साइड में आठ कुर्सी है यहां पे सामने दीवार पे पीले रंग का पेंट हो रखा है।

पीछे साइड में एक मकान बना रखा है हरे रंग का।

ये आदमियों को कुछ बता रहा है सामने बोतल रखी हुई है।

सामने एक पाइप लगा हुआ है पाइप के ऊपर एक पीले पीले रंग के पौधे खड़े हुए हैं।

एक ट्रैक्टर है दो सौ इकसठ का दूसरा है पांच सौ पचहत्तर --

एक दीवाल लगी हुई है ऊपर एक टंकी लगी हुई है।

यहां पे शीशो के ऊपर रखे हुए हैं दो डब्बी रखी हुई है।

पीछे वाले एक पीछे दीवार खड़ी हुई है।

एक लड़का पीछे बैग के साथ में बैठा हुआ है हरी हरी पत्तियां हैं।

कुछ लड़कियों ने अपने फेस ढक रक्खा है। लड़कियों के सामने बैग रखे हुए हैं।

पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट रंग की दीवार खड़ी हुई है वहां पे।

यहां पे एक फूल है फूल में सफेद पत्तिया हैं।

फुल के साइड में हरी पत्ती भी लगी हुई हैं।

डी_जे की साइड में बहुत लोग घूम रहे हैं।

यहां पे आंख चमक रही है सामने--

एक लड़का लाल शर्ट पहन कर बैठा है।

एक कट्टा धरा है उनके पीछे--

नीचे कई प्रकार की प्लास्टिक पड़ी हुई है।

यहां पे कुर्सी रखी हुई है यहां पे नीचे मैट पड़े हुए हैं।

व्हाइट रंग के दीवारें हो रखी है यहां पर उधर साइड में मेज रखी हुई है।